उनके सामने आरेंज कलर का वॉल लगा हुआ है फिर उस पर एक ग्रीन कलर का टेबल रखा है जहां पर एप्पल का लोगो लिखा पड़ा है।

चेकिंग कर रहे हैं एक लेदर जैकेट पहनकर और दूसरा--

और एक कुत्ता भी यहां पर देख बैठे हुए देखने को मिल रहा है फिर दूसरा साइड पर ब्लू कलर का एक लंबा सा--

और सेकंड फ्लोर पर हमे कपड़े सुखाए गए है और--

ये और यहां में हम देखने पर एक गोल गोल करके चम चमकीला वाला एक गोल दिख रहा है।

हर जगह पर और उसके पीछे भी बहुत सारे खिलौने देखने मिल रही--

और हमें यहां मे शो जो व्हाइट कलर का दिख रहा है।

पोस्टर फ्रंट में पिंक कलर का पर्दा हमे देखने को मिल रहा है।

को मिल रहा है जैसे इंसान और नाव पानी पर के ऊपर में।

और उसके ऊपर बहुत ज्यादा मशीन है जहां पर जहां से शिप को रोका जाता है।

और ऊपर में फैन और बहोत सारा कॉस्मेटिक्स और आईना भी दिख--

और उसमें बहोत सारा बाउंड्री में गार्डेन दिख रहा है।

और फिर उसके साइड पर हमें घास दिखाई दे रहा है और उसके नीचे स्कूटर और बाइक्स भी दिख रही है।

बहुत सारा शॉप्स और जेरॉक्स और कॉल करने वाले दुकान दिखाई दे रहा है।

वो सोफासेट ट्रायंगल शेप में है स्क्वायर शेप में है फिर मिडिल पर--

रेड कलर का फिर छोटा ब्राउन कलर का भी फिर हमें यहां पर बहुत सारे लाइट्स दिखाई दे रहे हैं।

ऊपर में ब्लू कलर से एक लाइट जा रहा है और हमें यहां में बहुत सारे सामान दिख रहा है।

फ्लावर्स भी दिखाई दे रहा है बाउंड्री पर फिर हमें रेडिश कलर का फ्लावर्स भी दिख रहा है।

और दो ताला वाला व्हाइट कलर का बिल्डिंग भी यहां पे देखने को मिल रहा है।

आधा इंसान लोग उन्हे देख रहे हैं बाकी सब क्रिकेट खेल रहे हैं।

और ओ एक ठू घर सा जो छोटा करके स्क्वायर शेप में है ग्रीन कलर का फिर उसका पीछे येलो कलर का बहुत बड़ा सा बिल्डिंग है।

इसके आमने सामने भी पत्थर और कचरे देखने को मिल रहा है।

यहां पर हमें एक मॉल देखने को मिल रहा है जहां पे बहुत सारे कपड़े दिख रहे हैं महिला के और यहां पे एक सोफा सेट भी है कलरफुल है।

पेड़ के सामने बहोत सारा पेड़ पौधे भी देखने को हमें मिल रही है।

यहां पर हमें एक जगह दिख रहा है जहां पर बहोत सारे इंसान--

हुए हैं और यहां पर बहुत सारे लड़के और--

ओ लेफ्ट साइड पर हमे एक ए_सी दिख रही है और छोटा छोटा विंडोज भी--

और आइना जैसा वाला खिड़की भी है।

और उसका बाहर में दो कार हैं व्हाइट कलर का और दूसरा ग्रे कलर का।

यहां पर हम देखने से हमें एक जगह पर बहोत सारे फ्रूट्स दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर ग्रीन और यलो मिक्स कर के हमे ऑरेंज दिखाई दे रहा है।